अम जो शीशे के लगा हुआ है गेट चारो तरफ से बस ऊपर से ढाला हुआ है। गमला लगा हुआ है। गमला में एक फुल रखा हुआ है। सौ प्लांट रखे हुए हैं लगाकर।